औकरा के ऐमे दिखावे जाला कि लोग टूर पर घूमे जाला आरी आरी घास फूस से की पेड़ पौधा होवेला

एक बड़का जो क्रिच पाडल हाई तीनगो बीचे टा तीनगो स्टाप हाई और बहुत बड़ाका क्रिच हाई|

ई बहुत ही बड़का बड़का फुलाले है ई सब गाँव देहात में लोग बाग सारे में लोग लगावेले ऐ करके बहुत बड़का बड़का एक घर आंगन उनगं सुंदर दिखी बहुत अच्छा दिखी।

बहुत ही निमन हई बहुत मने ड्राम उराम कलर उलर के रखल --

बाल बनल बा करिया-करिया मिट्टी लउकता ओमें मिट्टी बाल लम्बा-लम्बा कई ओकर|